यहाँ हमे एक लेटर बॉक्स दिखाई दे रहा है ऊपर हम देख सकते है लेटर बॉक्स के ऊपर बहुत सारी चीजे लिखी हुई हैं सामने एक आदमी बैठा हुआ है पीछे हम देख सकते हैं एक बिल्डिंग है जिसमें हमें खिड़की दिखाई दे रही है ऊपर बोर्ड जिस पर पोस्ट ऑफिस नाम लिखा हुआ है कुछ बांस दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ एक बैंक दिख रहा है बाहर हमें कुछ गाडियां खड़ी हुई दिख रही है ऊपर हमें बिल्डिंग मे शीशे लगे हुए दिखाई दे रहे है इसके सामने हमें कुछ कार खड़ी हुई दिखाई दे रही है यहाँ कुछ लोग है जो कि रास्ते से जाते हुए लग रहे है यहाँ हमें इसके बगल मे भी एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसके सामने हमें बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है।

सामने से एक औरत लड़का आता हुआ दिखाई दे रहा है इसके बैग में इसके पेट में भी एक बैग रखा हुआ है उसके सामने मे एक और बस दिखाई दे रही है ऊपर नीला आसमान दिखाई दे रहा है पीछे एक पेड़ लगा हुआ दिखाई दे रहा है नीचे सर्कल दिखाई--

सामने एक टी स्टॉल दिखाई दे रहा है । यहाँ पे कई सारी भीड़ लगी हुई दिखाई दे रही है। सामने एक लड़का खड़ा हुआ है उसने हाथ बु बुक ली हुई है।

कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पे बाहर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं बस के चार टायर दिखाई दे रहे हैं।

पीछे एक और बस खड़ी हुई है इसके आसपास कुछ लोग भी खड़े हुए हैं ऊपर में नीला आसमान दिख रहा।

या कुछ यहाँ पे कक्षे का नाम लिखा गया है यहाँ पे हम देख सकते है गेट दिखाई दे रा है गेट पे हमें एक सिटकिली दिखाई दे रही है सामने दो आदमी बैठे हुए दिखाई दे रहे है।

यहाँ हम एक औरत दिखाई दे रही है जिसने सफेद कलर की साड़ी पहनी हुई हैं सफेद और ग्रे कलर का कॉन्बिनेशन मे इसने साड़ी पहनी हुई हैं सामने एक हमे--

यहाँ कुछ ईसा मसीह की तस्वीरें लगी हुई है पीछे ईसा मसीह की हमें लोगो दिखाई दे रहा है।

यहाँ एक ए_टी_एम दिखाई दे रहा है ऊपर हमें एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है सामाने कुछ गाड़ियां खड़ी है यहाँ सामाने से हमें अंदर जाते हुए एक आदमी जा दिखाई दे रहा है जिसने पीठ पे बैग टंगाया हुआ है।